राशन का दुकान है राशन का दुकान है तीन चार लोग खड़े हैं।

मॉल है मॉल में कपड़े ढेर सारे कपड़े लगे हुए हैं येलो कलर का सूट है रेड कलर का सूट है।

एक बच्चे के हाथ में थैला है बच्चे लेडीज है सूट पहनी हुई है एक पेरेंट्स पहुंचाने आए हैं टीचर स्वाग --

रेस्टोरेंट है टेबल पे मेज रखा हुआ है प्लेट में टमाटर कटा हुआ है कटोरी चम्मच रखा हुआ है।

ऑटो के ऊपर ट्रै उम् पहिया रखा हुआ है स्टैंड में एक ड्राइवर है।